यहाँ एक स्टेट बैंक ए टी एम है। स्टेट बैंक एटीएम के बाहर बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है और वहा पर बाइके भी खड़ी है।

एक आदमी जा रहा है और एक काले रंग की बाइक खड़ी है।

ये एक विजय पुस्तक भंडार है जहां पर नीचे एक आदमी अन्दर है और एक आदमी बाहर---

यहाँ एक सामने नीला रंग की स्कूटी खड़ी है और उसके पीछे एक बाइक है और उसके पीछे एक और बाइक है और यहाँ पर लोग खड़े हैं।

यहां पर सामने बहुत प्यारी-सी सुंदर-सी सबसे बड़ी घनेश जी की मूर्ति रखी है ।